यहां पर बहुत सारी चेयर्स दिख रही हैं।

एक बुलेट का कलर ब्लैक है और एक का ग्रीन है और यहां एक टेबल दिख रहा है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है वॉल दिख रही है।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

छत दिख रही है छत पे बहुत सारी लाइट्स दिख रही हैं।

यह एक शॉप दिख रही है शॉप पे काउंटर दिख रहा है काउंटर के ऊपर बहोत सारा समान दिख रहा है।

और यहां बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में बादल दिख रहे हैं।

और यहां एक आदमी दिख रहा है जिसने सफेद शर्ट पहनी हुई है।

और साथ में एक क्रैट भी दिख रहा है क्रैट का रंग लाल है।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

और एक पुल दिख रहा हैं।

यहां यह एक बाथरूम दिख रहा हैं।